जैसा के हम देख सकते है सामने हमें एक आदमी दिख रहा है यह आदमी हमको स्टोर का मालिक लग रहा है ये हमको बुक स्टोर में बैठा हुआ दिख रहा है किताबें रखी हुई दिख रही है जोकि बोहोत अच्छी दिख रही है बोहोत ही सुन्दर दिख रही हैं।

आदमी जिसने सफेद शर्ट पहन के रखा हैं जो कि बहोत अच्छा लग रहा हैं जो कि बहोत ही सुंदर हैं जो कि बहोत ही प्यारा लग रहा हैं पीछे हमको दुकान दिख रही हैं वह बहोत अच्छी लग--